यह एक कृष्ण भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है।

हाथों में और गले में बहोत सारे गहने दिखाई दे रहे है।

काफी सारी तारें दिखाई दे रही है और काफी सारे पंखे दिखाई दे रही है।

यह एक रोड दिखाई दे रहा है जिसके पास बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रूम दिखाई दे रहा है।

जिसके अंदर काफी सारा सामान दिखाई दे रहा है एक पंखा दिखाई दे रहा है।

कबड्डी खेलते हुए बैट बॉल खेलते हुए--

पीछे एक टावर दिखाई दे रहा है काफी सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह एक डिग्री कॉलेज दिखाई दे रहा है।

पास में दीवारें खड़ी हुई है और हरी भरी घास।

यह एक जिम दिखाई दे रही है इसके अंदर बहुत सारी मशीनें दिखाई दे रही है।

यह एक खाली कमरा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर फर्नीचर का सामान दिखाई दे रहा है।

और उसके हाथ में एक फोन दिखाई दे रहा है सामने एक टेबल दिखाई दे रही है।

इसमें एक गमला दिखाई दे रहा है।

और दो कुर्सियां दिखा चेयर दिखाई दे रही हैं।

और काफी सारी लाइटें दिखाई दे रही है।

और पीछे खाली ड डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

और एक ए_सी लगी हुई है बोर्ड दिखाई दे रहा है।

और बोतलें दिखाई दे रही हैं।

यह एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

यह एक खंडहर दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक टेबल रखी हुई है उसके ऊपर दो लैपटॉप रखें हुए हैं पास में काफी सारी बुक रखी हुई है।

और इस कोठी पर बहुत सुंदर डिजाइन दिखाई दे रहा है।

दो ट्रक दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोग ढोल बजाते हुए दिखाई दे रहें हैं दो पुलिस वाले खड़े हुए हैं।

उपर कुछ ग्रील दिखाई दे रही है और एक उपर गेट दिखाई दे रहा है।